पहने चल रहा है।

उसने चुन्नी भी ली है।

औरत लाल साड़ी पहने खड़ी--

यह एक ढाबा है यहां ढाबा सेवेन लिखा है।

यह एक जीम है यहां फिटनेस लिखा है।

यहां बेंच भी हैं।

इमारत बहोत बड़ी है यहां ईंटें रखी है।

यहां स्ट्रांग कॉपी मिलती है।

वह आदमी देख रहा है।

पेड़ हरे भरे बहोत सारे हैं।